गुड मॉर्निंग फल फ्रूट की दुकान नज़र आ रही है जो यार फल फ्रूट की दुकान मे खड़ा है फल फ्रूट पड़े हुए भी नज़र आ रहे --

और ये हॉस्पिटल में खूब सारी नीला कलर का कांच लगाएडा छ हॉस्पिटल का कलर ही नीला हो गो।

कैंपिंग एरिया को हरा हरा कैंप भी नजर आ रही हैं दूर एक सूरज नजर आ रही हैं नजर आ रही ।

इस फोटो एक पार्क नज़र आ रही है वो पार्क एक कॉलोनी नज़र आ रही जो है ये पार्क के अंदर खूब सारा बच्चा खेलता नजर आ रहे है।

लिगो पर सपेदी कलर को कॉटन भी जाओडे छ।

लेज भी अलग सभी कंपनियां भी अलग अलग छे और कलर भी अलग अलग छे ये पार्किंग में खड़ी छे और पाछे की तरफ एक बिल्डिंग नज़र आ बहुत बड़ी --

हम बच्चा भी नज़र आ रही है गरीब लोग लोग न पढ़ाता हुआ एक मास्टर और मास्टरनी नजर आ री च --

और ये स्टेट बहुत सुंदर तरीके से सजाये हुए है फूले से और स्टेज के जस्ट उतरता एक छोटों से पूल बनाए हुए है जिसमें पानी पानी नजर आ रहा है। --

जू या कोई पार्क से नजर आ रही हैं जिनमें दो हिरण नजर आ रहे से एक हिरन का --